लड़के ने सफेद बनियान पहनी हुई है।

और पीछे एक हरे रंग की दीवाल बनी हुई हैं।

और यहां पर सफेद रंग की दीवाल है और लाल सीढ़ियां है।

ये लड़की काफी सुंदर लग रही है ये लड़की पतली लग रही है।

और बगल में ही एक गाड़ी भी खड़ी हुई है।

साथ में यहां नीले रंग से पेंट करा गया है।

और ऊपर लाल रंग की बिल्डिंग बनी है।

साथ मे यहां पानी पीने के लिए भी कप बना हुआ है।

और सफेद रंग का पेंट किया हुआ चर्च हैं।

ये एक मैदान है जहां पर एक पटरी रखी हुई है।

बगल में एक फूल का पेड़ भी है और बाहर एक पौधा लगा हुआ है।

और यहां एक कंप्यूटर भी लगा है।